पांच छे लड़का ड्राइंग क्लास कर रहे है और देखिए एक मैडम देख रहा है देखिए बहोत चीज़े फेवीकोल है है देखिए बहोत समान है हैड्राइंग क्लास-- .

यह बहुत सारा दुकान है देखिए ये कोई राशन दुकान है दो जगह राशन दुकान है एक देखिये लेडीज बैठे हुए है चाचा देखिए सब्जी बेच रहा है देख सकते है बहुत कुछ समान है।

और एक फोटो खीच रहा है और देखिए साइड में पंखा है लाइट है।

देखिए कुर्सी लगा हुआ है और देखिए।